बैडमिंटन खेल रहे है यहाँ पर चार आदमी खड़े हुए हुए है दो आदमी खेल रहे है।

पिले ये हरे पिले पिंक रंग के पुताई की गए है यहाँ पर दो चार आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

एक बिजली का कम्भा खम्भा दिखाई दे रहा है यह गीरी हुई--

बहुत बड़ी बड़ी इमारते बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे मने इत्ते सफ़ेद रंग की पेंट की हुई दिखाई दे रही है।

वे सभी बूट पहने है |

इस इमेज में स्ट्रॉबेर्रेरिस --

और दूर- दूर तक ये पेड़ दिखाई दे रहै है बहुत सारे हरे रंग के पत्ते लगे हुए --

आदमियां बूढ़े बैठे हुए दिखाई दे रहे है सब्जी मार्केट लगा हुआ है यहाँ पर एक आदमी आम के पत्ते लेकर --

ये पेंट की हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत सारी खिड़किया दिखाई दे रही है यहाँ पे ये छोटे से पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर तार मन दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर स्विमंग पूल नज़र आ रहा है यहाँ पे बड़ी इमारते यहाँ पे फिसल पटी फिसल के पानी पे आने के लिए दिखाई दे रहे है यहाँ पर अलग-अलग रंग के फिसल पट्टियां दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे है यहाँ पर मेम लोग दिखाई दे रहे है यहाँ पर बच्चे टेबल पर खड़े हो कर पेंटिंग करते हुए--

यहाँ पर बादले दिखाई दे रही है यहाँ बहोत नदियाँ दिखाई दे रही है नदी नदियों से डूबी हुई पेड़-पौधे नज़र आ रहे है।

चट्टाने दिखाई दे रही है जहां पर आदमी घुस रहा है वो आदमी ग--

की गमले रखी हुई दिखाई दे रहे है दीवार पर पेण्ट लाल एंड ब्लू वाइट रंग का दिखाई दे रहा हैं।

पोंगा लगाया हुआ दिखाई दे रहा है यह गाड़ी में डीजे गाड़ी को फ़ीट किया गया है।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

में बहोत पानी दिखाई दे रहा है वो नीले रंग से पोतई किया गया है यहाँ पर हरे-भरे छोटे-छोटे घाँस--